यह कृषि महाविद्यालय अनुसन्धान केंद्र है नारायणपुर इसमें लिखा भी है।

एक ये बड़ी बिल्डिंग है लाल कलर की जिसके बाहर--

यह एक रेस्टोरेंट हैं जो की काफी बड़ा ये रेस्टोरेंट है काफी रिच रेस्टोरेंट है यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर आते है यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर--

यहाँ पे जो काफी बाद मॉल है यहाँ पर लाइटिंग बन है यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर दो तीन मज़िला का मॉल है ये काफी बड़ा ये मॉल है यह मॉल के अंदर काफी ज्यादा --

ये एक टॉकीज़ है जहाँ पर भुत फिल्म का वो लगाया हुआ है भुत फिल्म लिखी हुई है यहाँ पे छोटा सा सिनेपोलिक्स है जहाँ पर भुत फिल्म लगे हुए है यहाँ पर यहाँ पर एक स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी है यहाँ पर एक एक स्क्रोस जा रही है।